चित्र में बहुत सरे लकड़ी के चेयर्स है।

इस चित्र पर यहाँ पर बहुत सारे पंखे है और यहाँ मीठी के ऊपर एक पंखा पंखे भी है।

में दो आदमी गाड़ी पर टाइल्स ले जा रहे हैं और तीन आदमी खड़े होकर देख रहे हैं और यहाँ पर देखने के लिए बहुत सा बहुत अच्छा दिख रहा है।

और रंग भी रंग के मो- रंग भी रंग के रंग भी रंग के फूलों भारी हुई मूर्ती फूल आ रहे हैं।

चित्र में पानी लहरा रहा है यहां पर बड़ा सा जहाज पर पांच आदमी टहल टहल कर पांच आदमी टहल टहल पर जहाज पर जा रहा है।

इस चित्र में ये बस स्टैंड में ब-बैठ के ये कोई एक बाते कर रहे है और यहाँ पे चैरे है इ बस में आदमी चढ़ रहे है और उतर रहे है।